बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ रेड कलर से रंगा हुआ है डोर्स नज़र आ रहे है विंडोस नज़र आ रहे है।

और वहाँ पर कुछ वस्तुएँ दिख रही है कबर्ड में वही एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है वहाँ पर टेबल रखा हुआ है जो ब्राउन कलर का है चेयर है जो क्रीम कलर का है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ पर जनरल स्टोर नज़र आ रहा है शटर दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर का है बिल्डिंग है वो दीवार है क्रीम कलर से रंगी हुई है और शॉप में --